कोई हरा कोई सफेद कोई अलग रंग का है।

यहां पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

शॉप के बाहर दो सोफे रखे हुए हैं जो ब्राउन रंग के हैं।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है।

यहां एक पिक्चर दिखाई दे रही है। यहां पर कुछ ट्रक खड़े हुए हैं।

यहां एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है।

टेबल पर ग्रीन कलर का कवर चढ़ा हुआ है टेबल पर बुक्स रखी हुईं हैं।

यहां पर लाल और नीले रंग के बैलून लगे हुए हैं।

यहां पर आसपास पेड़ दिखाई दे रहे है यहां पर दो डस्टबिन रखे हुए है।

यहां एक नीले रंग का ड्रम रखा हुआ है यहां पर एक टेबल रखी हुई है।

यहां पर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।